सामने एक चित्र दर्शाया गया है चित्र के अंदर एक समुन्दर है और समुन्दर में बहुत ही सारी --

सामने एक चित्र दर्शाया गया है।

सामने एक चित्र दर्शाया गया है उस चित्र में --

सामने एक चित्र दर्शया गया है और चित्र के ऊपर ऊँचे-ऊँचे पहाड़ो पर --